पानी का केन भी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक बोतल भी पड़ी हुई है सामने कुछ डिब्बी भी पड़े हुए हैं और एक एक बड़ा है।

हमें यहां कुछ गाड़ी दिखाई देती है और--

एक सेंटर भी दिख रहा है और एक पेंटिंग भी दिख रही है जोकि सामने बहोत ही सुंदर लग रही है मुझे पता नहीं --

साफा बांध रखा है नीले कलर का साफा बांध रखा है सामने कुछ घर भी दिख रहे हैं और कुछ पता नहीं --

दो पट्टा लगाया भी हुआ ए_सी भी लगाई हुई है और ऊपर लकड़ियों से बहोत ही सुंदर बनाया हुआ है और बहोत ही सुंदर लग रहा है।

और सामने एक क लकड़ी बड़ी सी गड़ी हुई है और सामने एक रेत भी पड़ा हुआ है बहुत सारा।

हमें यहां एक हेयर सैलून की दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक फोन चार्जिंग पर लग रहा है और ये दो --

और बहुत सारा मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट है ये एक मिठाई की दुकान भी पास मे है और सामने एक ट्यूबलाइट भी जल रही है और एक दिया भी जल रहा --

साइकिल मोटरसाइकिल बाईकें सब दिख रही हैं और कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही है।

हमे सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके ऊपर शांति नाम लिखा हुआ है और साफ भी --

और बहोत सारे पेड़ पोधै भी नजर आ रहे हैं डस्टबिन बहोत जगह जगह नजर आ रहे हैं डस्टबिन बहोत सुंदर लग रहे हैं।

सामने कुछ बिल्डिंग्स सी बन रही है और एक पानी की टंकी भी दिख रही है एक ढोल भी दिख रहा है और सामने कुछ पत्थरस भी दिख रहे हैं।

भी नजर आ रहा है जो कि धोती पहने हुए टी टी शर्ट पहने हुए और गमछा बांधे नजर रहा है और एक कच्छा लिए हुए --

लड़का खड़ा है जो कि बहुत ही ठंडा लग रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है एक दम बहुत ही सुंदर लग रहा है बॉडी बिल्डर है ये तो।

हमे यहां बहोत ही बड़ा रूम दिखाई दे रहा है जोकि एक टेबल भी दिखाई दे रहा है और सामने तीन चार लाइट भी दिखाई दे रही है और --

और बहोत ही सुंदर लग रहा है और एक ए_सी भी लगाई हुई है जोकि ठंडी --

दो लड़कियां खड़ी हुई है एक के सर पर बाल भी नहीं है रेड कलर का कोट पहना हुआ है और एक ने जूते पहने हुए हैं एक --

यहां बहुत ही सुंदर सुंदर हेयर कलर और फेस वॉश है सन क्रीम स्क्रब और --